ये चित्र काफी अच्छा है।

इस चित्र में एक दुकान है।

यह चित्र देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और काफी लाइटे की सुविधा दी गई है।

इस चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि यह एक मोबाइल वर्कशॉप है।

इसमें एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

वे बहुत सारे पेड़ देखकर अतिमोहक लग रहा है।

इस चित्र मे तीन कुर्सी खाली पड़ी हुई है।

इस चित्र में बहुत सारी महिलाएं लड़कियां और एक दो पुरुष दिखाई दे रहे है।

इस चित्र में जगन्नाथ मंदिर दिखाई दे रहा है।

ने कढ़ाई वॉल पेपर्स और बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

इस चित्र में हम यह देख पा रहे हैं कि यह चित्र एक जिम की दुकान है।

यह दुकान सैलून का दिखाई दे रहा है।

सैलून के अंदर मुझे दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ये देखने में अच्छी लग रही है।